फुट पे लिखा हुआ इयरिंग कान दुकान दुकान में एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

एक सैलून का दृश्य दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा भी है।

जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है जिम में वेट मशीन भी है और साइकिल मशीन भी हैं जिम में डेकोरेशन भी किया हुए हैं।

यहां पे एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है दीवार का कलर है व्हाइट ।

बहुत सारे बिल्डिंग भी दिख रहे है बिल्डिंग का कलर अलग अलग है जिसमें में ब्ल्यू वाइट है।

यहाँ पे एक रूम का दृश्य दिखाई दे रहा है व्हाइट बल्ब जल रहा है।

बोर्ड पे लिखा हुआ है सोनी और स्पीकर भी हैं।

टी_वी भी है एक स्पीकर भी है औ बिजली का तार भी लगाया हुआ है।

यह एक सैलून का दृश्य दिखाई दे रहा है दो व्यक्ति देख रहे हैं।

एक व्यक्ति बाल काट रहा है और मिलर भी दिख रहा है।

एक लेडी है जो की पाइप पकड़ी हुई है और नारियल का पौधा भी है।

यहाँ पे एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल बैलून।

पे एक बाइक शोरूम का दृश्य दिखाई दे रहा यहां पे बहोत सारे बाइक है।

गेट का कलर रेड है और ग्रीन है घर का कलर है व्हाइट और रेड ।

यहां अलमारी भी हैं जिसमें लिखा हुआ है यामा।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है गेट ब्राउन कलर का लगाया हुआ है।

एक बगीचा का दृश्य दिखाई दे रहा है बगीचा में घेरावा किया हुआ है।

एक छाता भी दिखाई दे रहा है एक ट्रक भी लगा हुआ है।

बिल्डिंग का कलर है एल्लो और रेड है बहुत सारे ऑटो हैं।

वे स्टेशन का दृश्य दिखाई दे रहा है और बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं।